सीधे हाथ पर देखे तो काले और भूरे रंग के कुछ कमीज़ भी रखी हुई है।

तस्वीर में हमे माँ काली की मूर्ति नजर आ रही है मूर्ति के बगल में एक त्रिशूल और एक घड़ी है।

ये एक मैदान है मैदान में बहोत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे है एक लड़के के हाथ में बल्ला भी हैं दो लड़के काले कलर की शर्ट भी पहनी हुई है दो ने सफेद कलर की शर्ट पहनी है।

बड़े-बड़े पहाड़ नजर आ रहे है हरी-भरी खेते है और बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी है नदी के किनारे एक लड़का लाल कलर की शर्ट पेहेने हुए खड़ा हुआ है।

भी है और कुछ पड़ी है दूर एक बिजली का खम्बा भी है एक लड़की आधा मास्क मुँह पर लगाए हंस रही है।

इस तस्वीर में एक गाड़ी खड़ी है गाड़ी का नंबर यू.पी. सिक्स फाइव बी.बी. सेवन थ्री नाइन थ्री है।